यहां बहुत सारे बच्चे प्लैंक कर रहे हैं।

यहां चार इंसान मछली काटकर बेच रहे हैं।

यह हमें छठ पूजा का मौसम लग रहा है।

सभी पॉट में पत्ते और फूल लगे हुए हैं।

यहाँ दो बेसिन भी लगे हुए हैं।

एक आईना भी दिख रहा है।

यहां बहोत सारे पंखे लगे हुए हैं।

दूकान का वॉल शिशा का है।

ऊपर एक बड़ा बोर्ड लगा हुआ है।

यहां बहुत सारे ऑटो भी लगे हुए हैं।

पीछे बहोत सारी गाड़िया भी दिख रही है।

एक काउंटर भी दिख रहा है।

ये एक वेडिंग जैसा दिख रहा है।

यहां हमे दो सीढी दिख रहा है।

इस फोटो में हमें एक सुंदर सा घर दिख रहा है।

इस फोटो में हमें एक वाइन स्टोर जैसा दिख रहा है।

यहां बहोत सारा डारू का बोतल लगा हुआ है।

इस फोटो में हमें एक रिसॉर्ट जैसा दिख रहा है।

यहां बहुत सारे कच्चे घर दिख रहे हैं।

इस फोटो में हमें एक नदी दिख रही है।

यहां बहुत सारे बॉक्स भी रखे हुए हैं।

इस घर का कलर ब्लू है।

यहा बहोत सारे पेस्ट्री रखे हुए है।

पीछे बहोत सारे इंसान खड़े हुए हैं।

इस फोटो में हमें एक रिसॉर्ट दिख रहा है।

इस फोटो में हमें एक स्टोर दिख रहा है।

यहां बहोत सारे बैग भी लगे हुए हैं।

आगे हमें बाइक और स्कूटी भी दिख रहा है।

बहोत सारे फ्लावर पॉट भी लगे हुए हैं।

एक बोर्ड भी दिख रहा है।

यहां बहोत सारे इंसान आगे दिख रहे है।

इस फोटो में हमें एक स्टोर दिख रहा है।

बहोत सारे पेड़ भी दिख रहे हैं।

इस फोटो में हमें एक घर दिख रहा है।

यहां दो सफेद सोफे लगे हुए है।

इस फोटो में हमें एक टेंपल दिख रहा है।

बीच में एक रोड दिख रहा है।